बहोत सुंदर है बहोत आदमी बेठे हुए हैं कोई प्रवचन हो रहा है सभी बैठके सुन रहे हैं और यह सीन अद्भुत सुंदर लग रहा है कुछ आदमी साइड में खड़े है।

एक स्टेज बना हुआ है जहां काफी लड़कियां नृत्यम‌ में भाग लेते हुए वो अत्यधिक सुंदर लग रही है ।

जैसा की हम देख रहे है की यह यह किसी एयरपोर्ट का फोटो लग रहा है यह मैन गेट है बहुत सारे आदमी अंदर जा रहे है।

जैसा कि हम इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि यह सब भारत नृत्यम की में भाग लेकर स्टेज पे अपना प्रस्तुत दे रहे हैं |

ए एक टेबल पे वॉटर बोटल लैपटॉप और कुछ है ये कागज --

जैसा की हम देख पा रहे हैं यह पच्चीस दिसंबर बड़ा दि मतलब संता क्लोस का दिन है।

यहां एक स्टेज सजा हुआ है जहां सेंटा क्लोज का पार्टी मनाया जा रहा है और एक आदमी सेंटा क्लोज के पूरे ड्रेस में है और सेंटा के लिए पूरा ये जश्न मनाया जा रहा है।

पता नहीं वो क्या निकालने की कोशिश कर रहें है लेकिन वो अद्भुत लग रहा है बहुत आदमी खड़ा है धुप में और कुछ निकाल --